यह एक सब्जी की दुकान है यहां पर कड़ी टिंडा --

यह एक सब्जी की दुकान है यहां पर गुलाबी रंग के रैक में --

इसी के बराबर में गर्ग बुक की दूसरी दुकान भी है इसके सामने।

इस बड़ी वाली टेबल पर बहुत सारे व्यक्ति एक साथ बैठकर खाना खा रहे है।

दुकान के ऊपर नीले रंग की पट्टी लगी हुई है जिस पर --

यह एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के अंदर दो लिफ्ट लगी हुई हैं।

नदी के अन्दर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

नदी के अंदर एक आसमानी रंग की एक बहुत बड़ी नांव है जो पानी मे चल रही है।

यह किसी बैंक का रिसेप्शन एरिया है यहां पे बहुत से कागज रखे हुए हैं।

सामने दो व्यक्ति खड़े हुए हैं उनमें से एक व्यक्ति ने नीले रंग की शर्ट और जींस पहनी है।

बहोत बड़ी इमारत बनी हुई हैं।

इसके सामने एक दरवाजा लगा हुआ है जिसमें कांच की खिड़की भी लगी हुई है।

और यहां आस पास बहुत सारे लोग जमा हो रहे है जिनमें से कुछ खड़े हैं।

जिसके अंदर ट्यूब पड़ी हुई है अलग अलग रंग के नारंगी पीली गुलाबी आसमानी --

कमरे के अंदर दो पलंग बिछे हुए हैं और पलंगों के ऊपर काले रंग के दो गद्दे --

यहां पर बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं।

जोकि आकार में त्रिकोणीय है वही ब्राउन कलर की एक--

यह एक हॉस्पिटल के अंदर का दृश्य है यहां पर व्यक्ति का इलाज करने के लिए बहुत सारी --

पेट्रोल पंप के आगे एक व्यक्ति काले रंग की मोटरसाइकल पर बैठा हुआ है।